ये एक पोस्टर लगा है बहुत बड़ा और यहां पर लिखा हुआ है इलेक्शन होगा यहीं से--

और उसके आगे जो है बहुत सारे बांस के--

पूरे में जो है बांस लगाया है और यहां पे पेंट कर रहे हैं।

यहां पर एक चीन यहां पर कुछ पेड़ है और यहां पर ता खंबे लगे हैं तार लगा है यहां पर शायद बाड़ है।

और चारों तरफ यहां पर अ उसके चारो तरफ जो है पेड़ ही लगे हुए है।

बलब जल रहा है रोड जल रही है और अ एक लैपटॉप भी रखा है वहां पे--

यहां पर बहुत बड़ा स्कूल है महाराजा अ-अग्रसेन--

और यहां पर कुछ पानी की बोतले सी रखी हुई बड़ी-बड़ी और एक इधर वेन भी खड़ी है।

और इधर के तो ऊपर अ दो मंजिला तीन मंजिला बना हुआ है।

और यहां पर यहां पर कुत्ते के ही बर्तन है यहां पर।

और यहां लैपटॉप रखा हुआ है और यहां पर--

यहां पर कुछ बच्चे हैं जो अ रेस कर रहे हैं और यहां पर--

तीन लड़की है एक लड़का है और तीन नीले और सफेद रंग की--

है ये एक जिम सेंटर है यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो जिम कर रहे हैं और--

यहां पर ये ईसियों का प्रोग्राम हो रहा है औ यहां पर एक रूम है और य यहां पर अ म --

जिस पर कपड़ा पड़ा है उस पे भी प्लस का निशान बना हुआ है।

काल और यहां पर लाल कलर की है और इसमें आसमानी कलर की है।

ये श्री हींग लाज बुक डिपो है और यहां पर बाहर की तरफ बहुत सारे बैट रखे हैं दोनों तरफ।

ये लोग कॉपी किताबें खरीद रहे हैं और यहां बॉक्स भी हैं बहुत सारे--

और यहां पर उसमें रबड़ पेंसिल शॉपनर तरीके की चीजें बहुत सारी रखी हुई--

बहुत सारी और यहां पर गमले भी रखे हैं। एक चारपाई पड़ी हुई है और--

और उधर की तरफ टावर लगा है और तार इधर को जा रहे हैं बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहां सब्जियां भी लगी हुई है।

बहुत सभी पुलिस वाले यहां पर बैठे हुए हैं और इधर की तरफ भी कुछ पुलिस वाले बैठे हैं और यहां पर एक नेता जी है।

यहां पर एक बहुत बड़ा हॉल है और यहां पर जुटो कराटे का प उये कॉम्पिटिशन चल रहा है।

और एक कैमरा कैमरामैन भी है कैमरा लेके वो फोटो खींच रहा है।

और इधर की तरफ बहुत सारे लोग हैं अम्म अ बच्चे हैं जो यहां पर चेयरों पर बैठे हुए हैं।

अ यहां से और यहां पर गेट बंद है ये और कुछ तार पर कपड़े भी फैले हुए हैं और इधर की तरफ बाउंड्री है वो आधी टूटी हुई है आधी जो है वो सही है।

और उस गोल सर्किल में भी गोल-गोल सर्किल और भी बना रखे हैं छोटे-छोटे और उसमें जो है पेड़-पौधे लगा रखे हैं।

और इधर की तरफ दूसरी तरफ है वाइट कलर की है और इसमें भी आसमानी कलर के शीशे लगे हुए हैं।

और बाहर की तरफ बहुत सुंदर गार्डन है और यहां पर अ बहुत सारे बल्फ लगे हुए हैं और बहुत सारे पेड़ भी हैंयहाँ--

और यहां पे एक गोल रंग का गोल जो है यहां पे हाथ धोने वाला भी है।

और यहां पे नान ही नान चाय ही चाय लिखा हुआ है।

अ लड़के हैं लड़के हैं जो एक्सरसाइज कर रहे।

और पीछे की तरफ बहुत सारी यहां पर अ गद्दी सी रखी हुई हैं।

ये प्लास्टो के यहां पे पाइप है और यहां पे पेंट भी है और यहां पे --

इसमें दो मंजिले तक बनी हुई है और हर एक में यहां पे कमरा बहुत कमरे हैं यहां पर--

और यहां पर नीचे की तरफ भी अ तीन चार पांच ए_सी --

और वहां पे जो है फुलवारी भी है और अमरूद का पेड़ भी है।

अ बहुत मजा आ रहा है कोई बर्फ का गोला बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा है।

यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंगें है यहां पे कॉम्प्लेक्स टाइप का बना हुआ है और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं यहां पे।

यहां खजूर का पेड़ भी है और भी बहुत सारे शोपीस के पेड़--

यहां पे बहुत बड़ा बाजार सा लगा हुआ है और यहां पर दोनों तरफ दुकानें हैं और बहुत भीड़ है यहां पर--